अ अ पेड़ पौधे है और पीछे साइड में भी बहोत बड़ा ग्राउंड है।

यहां पर अं कुर्सियों में आदमी बैठे हुए हैं।

और अ इधर साइड में भी मां सरस्वती वगैरे --

यहाँ पर अ बहोत सारे आदमी वगैरह खड़े हैं कोई पानी पी रहा है और इधर के साइड में कूलर --

और टेबल पर अ काफी वगैरह करके लिख रही है।